और एक कीबोर्ड भी रखा हुआ है और ये और भी सारे इंस्ट्रूमेंट है जो पैक करके रखी हुए है यहाँ पे लाइट जल रही है और यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा हैं।

यहाँ पे एक झण्डा भी लगाया गया है एक मंदिर भी है और यहाँ पे आस-पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

वाटर पार्क है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वाटर पार्क में खेलने के लिए आये है यह पे स्लीपर भी है स्लीपर अलग अलग है और यहाँ पीछे भी बहुत सारे लोग इककठा हुए है।

बोहत ही ज्यादा साफ़ है और यहाँ पे दूर - दूर तक सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे रही है और ये पहाड़ का इलाका है इसलिए यह देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहोत ज्यादा सुंदर --